यह एक टिकट घर का दृश्य है यहाँ पर सूचना पत्र लिखा हुआ है।

यह एक मधेपुरा में स्थित महाविद्यालय का चित्र है।